ईसा मसीह का एक फोटो दिखाई दे रहा है।

काफी खुला खुला दृश्य दिखाई दे रहा है।

जिओ काएक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है।

और वहां पर काफी सुंदर आकृति में ये दिखाई दे रहे हैं जो पुराने राजा महाराजाओं की--

बल्कि संगीत विद्यालय दिखाई दे रहा है।

सेंटरिंग बना होता है उसके ऊपर--

छड़ बिछाने का काम कर रहे हैंऔर छड़ों के बिनाई भी हो रही है।

ये एक दृश्य दिखाई दे रहा है जहां पर बस जो है।

फूलों का बागान दिखाई दे रहा है।

बने बाउंड्री का यह एक दृश्य दिखाई दे रहा है।

जो बाउंड्री है काफी लंबा और चौड़ा दिखाई दे रहा है।

और एक मुख्य दरवाजा भी दिखाई दे रहा है वह भी काफी लंबा और चौड़ा बना हुआ है।

गेंदे के फूलों की माला से सजाया गया है।

कुछ व्यक्ति काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

रंगीन कलर की काफी सारे रिंग्स रखे हुए हैं और इन रिंग्स की--

लंबाई चौड़ाई काफी बड़ी दिखाई दे रही है जिसमें तीन से चार व्यक्ति आराम से उसमें खड़े हो सकते हैं या फिर तैर सकते हैं।